दोनों के कॉफ़ी के कप मेज पर रखे हैं। दो कटोरिओ में खाने की चीज़ रखी हुई हैं। एक पानी की बॉटल --

दूर बोहोत पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बोहोत सारे लोग मैदान में खड़े हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ खा रहे हैं बैठ कर।

और उसपर कुछ चित्रकारी की गई है। चित्रकारी में कार्टून बने हुए है जोकि मोटू पतलू और छोटा भीम है।

खुला आसमान दिख रहा है। एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है। सड़क पर पट्टियां दिखाई पड़ रही हैं पीले और काले रंग की।

जहाँ पर दूर की खेतो में कुछ फसल दिख रहे है लेकिन पास के खेत --

उस पर सरिया से बना के साँचे बन बिठाये गए है कुछ लोग --

एक व्यक्ति यहाँ बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसके पास एक हाथ में पकड़ने वाला झोला है। एक पिट्ठू बैग है।

पीठ पर बैग त टाँगे हुए हैं। पेंट शर्ट पेहन रखी है उसने। हाथ मै कुछ कागज ले कर उनको पढ़ने कि कोशिश कर रहा है।

जहाँ बोहोत सारी बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई है। नीले रंग की लोहे की बड़ी-बड़ी मशीने हैं।

सीमेंट किया गया है लेकिन पुताई नहीं हुई है। मजीद का गुंबद सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा है।

इस पर विजय सिंह पथिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। जब के गेट सफेद रंग के हैं। जिसपे नीले रंग का है।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जिस

ए.फ.डी. लिखा हुआ है। सफेद रंग की इमारत मकान के पीछे बनी हुई है।

दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है। जिस पर सोनी लिओन फिलिप सब लिखा हुआ हैं।

नीचे दो रिक्शे दिखाई पड़ रहे हैं। एक रिक्शे पर रिक्शा वाला बैठा है। रिक्शा लला रंग का है।

जिम कि दीवारे हरे रंग की है और पीले रंग की है।

और एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बिहान हीरो लिखा हुआ है।

यहां पर तीन दुकाने नजर आ रही हैं। जिसमे एक प्रतीक जनरल स्टोर के नाम से है।

कुछ खाने वाली चीज हैं।